ये एक चाय बागान की तस्वीर है बहुत बड़ा चाय का बागान दिख रहा है।

दीवाल के सामने तीन चार फोर व्हीलर भी खड़ा हैं घर के बगल में बहुत सारे बोर्ड दिख रहे हैं --

मंदिर पे कुछ लोग दिख रहे हैं सामने एक गणपति की मूर्ति भी रखी है महिला बैग ले के खड़ी है ।

गेस्ट के लिए सोफा लगाया गया है सोफा पर एक बैग रखा हुआ है शामने में इस पर कुछ पुस्तके रखी हैं ।